ये एक चॉकलेट केक है चॉकलेट केक में चॉकलेट वाले लड्डू रखे हुए है साइड में ओरियो बिस्कुट रखा लगा हुआ है और उसकी आइसिंग चॉकलेट से की गई है।

ये पहाड़ है --पहाड़ -- ड़ इसके ऊपर पहाड़ हैं और नीचे भी पहाड़ है और सीढ़िया बनी हुई है और झाड़ पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ की सीढ़िया बनी हुई है झाड़ पेड़ दिख रहें है कुछ पेड़ सूखे हुए दिख रहें हैं कुछ पेड़ --ड़--

बहुत से चे झाड़ पेड़ दिख रहे है नीले कलर का आसमान दिख रहा है और नीचे सा सफ़ेद भी दिख रहे है लाइट नि--

ये एक जिम है यहाँ पे बहोत सारी मशीने रखी हुई हैं जिम कलर ब्लैक दिख रहा है।